सामने एक बहुत बड़ा हाल है जिसमें तीन सेट लगा हुआ है जिसमे ट्यूब लाइट लगी हैं ।

सामने मूर्ति दिखाई दे रही है जो दुर्गा जी की मूर्ति है एक शंकर जी की मूर्ति हैं।

सामने एक स्टेज बनी हुई है। उम्म्म्म्म उम्म जिसमें उम्म स्टेज पर लाइट लगी है।

और रर्रर्रर उम्म्म्म्म बहो बहुत से आदमी खड़े हुए है और टेंट बहुत सजा हुआ हैं।

एक औरत बैठी है ऊ एक बच्ची कुछ दे रही है।

सामने एक स्टेज बनी हुई हैं जिसमें बहोत सारी लाइट लगी हुई हैं और कुछ पर्दे लगे हैं और बोर्ड लगा हैं जिस पर कुछ लिखा हैं फोटो लगी हैं स्टेज पर--

अअअ दो औरतें बैठी हु-हुई हैं जो वीणा रखे हैं और एक लड़का बैठा हैं जो ढोल रखे--

सामने एक बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है जिसमें बहोत सारा पानी भरा हुआ है जो हरा-हरा दिखाई दे रहा है और--

पीला और हरा नीला कलर दिखाई दे रहा है और बड़े-बड़े पत्थर है जिन पर एक लड़का खड़ा हुआ है।